यहाँ पर सब्जी वाला सब्जी बेक रहा है।

यहाँ एक बहुत ही सुंदर बगीचा है।

यहाँ पर पानी और फल का मेल दिखाई दे रहा है।

पानी के बीचो बीच एक टीपू बना हुआ है।

और उस घास पर एक व्यक्ति बैठकर सूर्य की किरणों का मजा ले रहा है।

जो की छठ पर और कार्तिक पूर्णिमा --

नृत्यका नृत्य कर रही है।

नृत्तीका ने हरे कलर की --

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ --

दूर दराज दस्तावेज भेजे जा सकते हैं।

कांच के बने हुए हैं बैंक में कई लोग अंदर है।

इंडिगो का जहाज आकर खड़ा हुआ है।

जहाज में से यात्री उतर रहे हैं।

गोल्डन कलर का ब्लाउज और कमरबंद पहना हुआ है।

यह एक चर्च का मुख्य द्वार --

मेडिकल कॉलेज है यह कॉलेज के साथ साथ हॉस्पिटल भी है।

देख पा रही हूँ यह एक बहुत ही पुरानी --

इस लाइब्ररी में पुरानी से पुरानी किताब मिलती --

सड़क के एक और बहुत बड़ी-बड़ी इमारतें हैं।

दोनों छोरों पर खूबसूरत पेड़ पौधे --

तबेले में एक भैंस और एक भैंस का बच्चा खड़ा है।

यहाँ पर अनगिनत पत्तागोभी उगे हुए हैं।

चारों तरफ पत्ता फैला हुआ है और बीच में गोल-गोल गोभी दिखाई दे रहे हैं।

पानी झिलमिल कर रहा है --

जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है यहां पर कुछ मजदूर --

लगीं हुई है। जलेबी एकदम गरम-गरम है।

इसके आसपास बहुत सारे जंगल उगा हुआ है ।

लड़का अपने बाल कटवाने आया हुआ है।

बहुत ही बड़ा समुंदर है समुंदर में हरा-हरा पानी है --

दिखाई दे रहा है यहां पर एक झरना पत्थरों के बीचो बीच --